और यहां कुछ घर भी--

बहुत सारी मिठाइयां रखी गई --

यहां पर एक फूल है।

सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ बेंच है।